छठ महापर्व का श्रद्धालुओं लोग का इमेज दिखाया गया है जो धार्मिक स्थलों में --

के द्वारा बनाई हुई है जो तृतीया युग अ तृतीया युग में ये द्वापत युग में बनाई गयी थी जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है जो लोग दूर-दूर से --

हमारे देशवासियों को अन्य हमारे नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए सूचित किया जाता है की देवी-देवताओं के रूप पर अतीत प्रश्न होने के लिए --

घर में ही खुश रहना चाहते हैं जो ऐसा घर हो तो सुन्दर --

बल्की खूबसूरत देखने में ही उ नहीं खूबसूरत चीज भी है और लोग दूर-दूर से यहाँ पे खाने के लिए आतें है।

ये खूबसूरत डिज़ाइन में बनाया हुआ पार्क है जो देखने में बेहद सुन्दर है।

बोहोत सुन्दर-सा एक तस्वीर दिखाया गया है जो बेहद सुन्दर डिज़ाइन में है प्रतीत त बहोत मेहनत से बनाई गई है बल्की --

ये केंद्रीय प्रशासन का ऑफिस है जो देखने में बेहद ही सुन्दर है कलरफूलों में केबिन बना हुआ है तरह- तरह के |

पन्द्रह अगस्त छब्बीस जनवरी को ऐसे डांस परफॉर्मेंस में भाग लेने के लिए सहमति सहयोग में आगे बढ़ाने के लिए नाग-नारियों को --

बढ़िया बहोत ही बढ़िया सुंदर का चेयर है जो बेहद ही सुंदर है और कलरफुल स्पंज वाले सीट हैं जो।